देखने मे यह दृश्य काफी अच्छा लग रहा है अंदर हमे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है साथ ही यहां कुछ सुचना भी लिखी हुई है।

ये इस तस्वीर में हमें एक क्लिनिक देखने को मिल रहा है। यह क्लिनिक एक डॉक्टर का क्लिनिक है। जिसका हम ऊपर पर पोस्टर भी च - चिपका हुआ देख पा रहें हैं।

मानो जैसे कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो। हमें आस पास यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है। साथ ही हम यहाँ लोगों को भी देख पा रहे है।

सूख भी गये है दूर की ओर देखे तो हमे यहाँ बहोत से पेड़ देखने को मिल रहे है देखने में ये दृश्य काफी अच्छा लग रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक मैदान देखने को मिल रहा है। यह मैदान दिखने में काफी बड़ा है। यह मैदान हरा भरा लग रहा है। यहां हमें बोहोत से लोग खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ के साथ-साथ हमें यहाँ कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है देखने में ये दृश्य काफी अच्छा लग रहा है।